तो भाईयों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ी एक फील्ड है जहाँ पे एक रोड जा रही है रो रोड के सामने बहुत सारे झूले लगे हुए हैं डस्टबिन है।

हेलो भाई आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक मार्बल का पूरा बिछा हुआ है सोफा ओफा लगा हुआ है यहाँ एक स्विच बोर्ड है सामने बहुत सारी दीवाल पे--

पोस्टर लहे हुए है लाइटे जली हुई है फेन लगा हुआ है।

एक फुल का पेड़ पोधा है छोटे छोटे स्विच बोर्ड है।

बाहर बहोत सारे टेबल चेयर वेयर रखी हुई है।

इस टेबल पे एक एक बोटल है बोटल के सामने एक अच्छी सोफा लगा हुआ है।

एक ड्रिल मशीन है जो कनेक्ट है एक स्विच बोर्ड से--

तो हेल्लो भाइयो आप लोग देख सकते है एक रोड है रोड के सामने एक जस्ट एक--

एक रोड है रोड के सामने एक में एक मैकेनिक का दुकान है।

कार मैकेनिक का दूकान है जो अपना कार वोस कराने आया है।

एक टीचर है जो सामने से इंडेक्स पे खड़ा होक बड़ा पड़ा रहा है।

एक आदमी वाय एक आदमी ब्लू कलर का जीन्स पिंक कलर शर्ट पेहेनके सामने से फोटो खीचा रहा है ।

बैंक ऐ_यु यूनियन बैंक है यूनियन बैंक के सामने बोहत सारे बाइके हाइके लगी हुई है स्कूटी रखी हुई है बैंक के अंदर सब आदमी पैसे निकलने गए है।

बहोत सारा आदमी पैसा जमा करते है पेसे निकालते है।

माउस उस पट्टी में बहोत बड़ा गार्डन है सामने से एक चार चक्का आ रहा है।

एक बहोत बड़ा गार्डन है जिसमे आदमी लोग खेलते है बहोत सारे बच्चे भी खेलते --

यहां पे बहुत बड़े बरे जंगल है एक छोटे छोटे पेड़ पौधे भी लगे हुए है यहां पे देख--

तो हेल्लो भाईयो आप लोग देख सकते है यहा पे--

एक बहुत बड़ा गार्डन है गार्डन के सामने एक चेयर लगा हुआ है जहा पे दो आदमी बैठे हुए है के सामने बड़े बड़े पेड़ है।

तो हेल्लो भाइयो आप लोग देख सकते है ये करवट है रोड के सामने एक बाइक लगी हुई है ।

हेलो भाई आप लोग देख सकते है की स्टेडयम है स्टेडयम के सामने एक रोड है जहा पे बोहत सारी गाड़िया जा रही है एक वाइट कलर की गाड़िया है एक रेड कलर की गाड़िया है।

घर के उपर एक ट एक वाटर टंकी रखा हुआ है एक--